जिम का जो सामान है वह दिख रहा है और सामने एक टी_वी लगा हुआ है और ऊपर में--

ऊपर में एक लाइट है बहुत तीन चार लाइट है और साइड में पेड़ का--

तीन-चार आदमी कान पकड़ के जिम कर रहा है।

और सामान सामान एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है डिब्बा में जो--

राइट साइड में जो रैक है उसमें रखा हुआ है।

एक दुकान में बहुत ज्यादा भीर लगा हुआ है सब लोग एक जगह पर खड़ा है।

खाना खा रहा है और साइड में एक माउंटेन बना हुआ है जिसमें पानी है पानी नहीं है खाली है पूरा --

और सामने एक हेलमेट रखा है जिसमें पुलिस लिखा हुआ है और साइड में--